और जिम में बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन रहते हैं जिससे जिमर लोग जिम करते हैं। जिम हमें हर रोज करना चाहिऐ।

देख भाल करते है और ए.टी.एम. में बहुत ही आसानी तरीका से पेसा उठता हैं।

ऑटो गाड़ी में बहुत तरह के फैसिलेटी अभी उपलब्ध है। ऑटो गाड़ी बहुत ही अच्छा गाड़ी होता है। इसमें तीन चक्के होते है।